नमस्कार more on single dimensional array in awk पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगेः
एक array के elements को scan करना
delete statement
argv array और environ array
हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1604 operating system और gedit text editor 3201
आप अपनी पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के अभ्यास के लिए आपको हमारी website में array पर पिछला awk tutorial देखना चाहिए
आपको किसी भी programming भाषा का कुछ बुनियादी ज्ञान होना चाहिए जैसे c या c ++
यदि नहीं तो कृपया हमारी website पर समरूपी tutorials देखें
इस tutorial में उपयोगित files इस tutorial के पेज पर code files link में उपलब्ध हैं कृपया इन्हें डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
पहले हमने awk arrays के कुछ पहलुओं को कवर किया था
awk हम देखते हैं कि file के साथ awk array का उपयोग कैसे करें
हम उसी फाइल awkdemo txt का उपयोग करेंगे जिसे हमने पहले सेव किया था
यहाँ पहला field छात्रों का roll number और छठवां field स्टाइपेंड है
पहले सभी छात्रों के लिए hra की गणना करें
यहाँ hra उनके स्टाइपेंड की राशि का 30% है
मैंने code पहले ही लिखा है और इसे calculate _ hra awk के रूप में सेव किया है अब उस फाइल में देखते हैं
begin section में field separator pipe symbol के साथ इनिशीलाइज है
फिर action section में हम array elements इनिशीलाइज कर रहे हैं
यह section एक input फाइल की प्रत्येक line के लिए एक बार निष्पादित होगा
मैंने एक array variable के रूप में hra और index के रूप में dollar one घोषित किया है
यहाँ dollar 1 पहला field दर्शाता है जो कि roll number है और वेल्यू है dollar 6 multiplied by zero point 3 जहाँ dollar six स्टाइपेंड वेल्यू है
अतः index roll number में array hra value के रूप में समरूपी hra राशि रखेगा
how इस array के सभी elements को scan कैसे कर सकते हैं
आपको for loop के इस रूपांतर का उपयोग करना चाहिए
यह loop array में प्रत्येक index के लिए एक बार statements निष्पादित करता है
variable var एक एक करके index values में set होगा
code end section में लिखा है
यह section awk के input फ़ाइल की सभी lines को संसाधित करने के बाद निष्पादित होगा
variable i एक एक करके प्रत्येक index value या roll number पर इनिशीलाइज होगा
for loop की प्रत्येक पुनरावृति में विशेष roll number के लिए hra printed होगा
terminal पर जाएं file को निष्पादित करें ctrl alt और t कीज दबाकर terminal खोलें
cd command का उपयोग करके उप folder पर जाएं जिसमें आपने code files downloaded और extracted की है
awk type करें: awk space hyphen small f space calculate _ hra awk space awkdemo txt
output सभी छात्रों के लिए roll number और hra दिखाता है
मान लीजिए मैं roll s02 वाले छात्रों के लिए record डिलीट करना चाहती हूँ
तो हमें index s02 में array element डिलीट करना होगा
calculate _ hra awk code का उपयोग करके में इसे करती हूँ
for loop से पहले enter दबाएं और निम्न code type करें
file सेव करें और terminal पर जाएं
terminal साफ करें
पिछली निष्पादित command का प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं एंटर दबाएं
output में roll number s02 वाले छात्रों का record printed नहीं हुआ है
अतः delete command का उपयोग करके किसी भी array element को डिलीट किया जा सकता है
आपको index के साथ array के name को दर्शाना होगा
क्या होगा यदि मैं पूर्ण array को डिलीट करना चाहती हूँ
ऐसा करने के लिए code पर जाएं
delete statement से quotes और square brackets के साथ index s02 डिलीट करें
file सेव करें और terminal पर जाएं
terminal साफ करें पिछली निष्पादित command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं एंटर दबाएं
देखें हमें कोई output नहीं मिल रहा है पूर्ण array डिलीट हो गया है
याद रखें awk builtin variables पर पहले के tutorial में हमने कहा
argv एक array है जो command line arguments संचित करता है
मैंने argc _ argv awk में code पहले ही लिखा है
code awk begin section में लिखा है
पहले हम arguments की संख्या प्रिंट कर रहे हैं जो argv की value है
फिर for loop का उपयोग करके हम 0 से argc1 तक i की value के लिए loop कर रहे हैं
और हम index i में argv प्रिंट कर रहे हैं टर्मिनल पर जाएं और फाइल निष्पादित करें
awk terminal पर type करेंawk space hyphen small f space argc underscore argv dot awk space one space two space three
यहाँ one two three command line arguments हैं
हमें arguments की संख्या 4 मिली लेकिन याद रखें हमने केवल 3 arguments दिए थे
वैयक्तिक arguments देखें index 0 में पहला argument या argv वास्तव में awk कमांड का नाम है
फिर हमारे पास तीन arguments हैं जिन्हें हमने command line में दिया था
यही कारण है कि argc की value हमेशा command line की संख्या से arguments एक अधिक दिया जाता है
एक और उदाहरण let हैं
array element indices environment variable के names हैं array element वेल्यूज विशिष्ट environment variable की वेल्यूज हैं
अब देखते हैं कि हम विभिन्न environment variables की values कैसे let सकते हैं
पहले अपना username print करते हैं
हमें environment variable user की value print करनी होगी
command prompt पर निम्न command type करें
enter दबाएं
output loggedइन हुए यूजर का name दिखाएगा
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखाफाइल के साथ awk array का उपयोग करना
एक array के elements scan करना
delete statement
नियतकार्य के रूप में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए कुछ भत्तों की गणना करें
paper प्रस्तुति भत्ता जो स्टाइपेंड का 80% है
प्रदर्शन प्रोत्साहन जो स्टाइपेंड का 20% है
दो भिन्न arrays में भत्ते संचित करें
प्रत्येक भत्ते और औसत के लिए आवश्यक कुल राशि print करें
awk program से environment variable path की value print करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में अपनी समयबद्ध queries post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद